और एक बन्दा खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है शूज वगैरा डाल रखे हैं कोइ--

ये एक बहोत बड़ा शोरूम है जिसमें कांच की प्लेट में डिब्बे बनाए गए हैं बुक्स वगैरा जीन डिब्बे में कपड़े वगैरा रखे हुए एक डिब्बा मेज के ऊपर रखा हुआ है।

सेंट वगैरा नीचे स्विच वगैरा के डिब्बे रखें हुए हैं साथ में और--

और जगह जगह पत्थर के ढेर पड़े हैं साथ में कोई अं बाउंड्री दिखाई दे रही हैं रेत हैं।

अनकंप्लीट घर दिखाई दे रहा वहां पे लोह गाटर वगैरा लग रहे हैं जहां पर एक आदमी के हाथ में मशीन है।

और एक एक आदमी खड़ा हुआ--

और इसमें एक नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए शीशे में दीवारों पे भी कुछ टंगा हुआ बैग व--

ये एक वो है जिसमें के कुछ पाइप्स दिखाई दे रहे हैं कुछ बनाया हुआ है बोरी वगैरह बिखरी हुई है कट्टे वगैरह हैं।

सामने एक फ्लोर है। जयमाला का मंडल है साइड में फूल वगैरा है। एक आदमी स्टिक ले रहा हाथ में--

ये एक टोकरी है जिसमें बहोत सारे टमाटर है टमाटर बिल्कुल रेड भी है ग्रीन भी है।

इस सीनरी जिसमें बहुत सारे बच्चे दिखाए गए

ये एक शॉप है जिसमें बहोत सारे परफ्यूम वगैराह रखे हुए हैं परफ्यूम की बहुत सारी बोतले है डिजाइनर हैं लुकिंग सो गुड ।

ये एक बहुत बड़ा अ तलाब दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सारे--